अउर साइड में बहुत से पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मदरसे पर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

और कमरे की छत पर पंखा लगा हुआ है।

यह एक कमरा है कमरे पर पीले कलर का पेंट हो रखा है।

दुकान के अंदर बहुत से अलग अलग रंग रखे हुए हैं।

यह एक शोरूम है शोरूम के अंदर सफेद कलर का पेंट हो रखा है।

यह एक जिम है जिम के अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

अउर इसकी छत पर लाइटें अउर पंखे भी लगे हुए हैं।

और साइड में ग्रिल भी लगी हुई है और साइड में बहुत सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

आउर सामने एक कार दिखाई दे रही है।

और एक चटाई भी है और ऊपर की ओर एक जीना दिखाई दे रहा है।